दीवार पर पाँच पोस्टर्स लगे हुए हैं।

इस छवि में दो काले रंग का सोफा नजर आ रहा है।

एक बिस्तर दिखाई दे रहा है।

इस छवि में पौधे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में दीवार सफेद रंग की है।

दीवार के ऊपर सब डिविजिनल लाइब्रेरी रंगिया शब्द लिखा हुआ है।

कई सारे वृक्ष नजर आ रही है।

एक मोटरसाइकल भी रखा हुआ दिख रहा है।

ये तस्वीर एक किताब की दुकान की है।

कुछ पंखे दिख रहे हैं।

टी शर्ट पे अरमानी एक्सचेंज शब्द लिखा हुआ है।

इस छवि मे एक आदमी लाल हेलमेट में नज़र आ रहा है।

एक इमारत पे होटल पूर्णालक्ष्मी बोड पे लिखा हुआ है।

पेड़ के पास साइकिल और मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है।

पीछे बड़ी सी इमारत भी दिख रही है।

ये छवि में एक बांध नजर आ रही है।

इस छवि में रास्ते पे गाड़ियां चलती नजर आ रही है।

पीछे खिड़की से कई सारे पेर नजर आ रही है।

इस छवि में दो काले रंग की कुर्सी दिखाई दे रही है।

कुर्सी पे सफेद रंग की वस्तु रखी हुई है।

बोर्ड पे ग्लोबल जिम शब्द लिखा हुआ दिख रहा है।

एक लाल रंग में बैग दिखाई दे रहा है।

सामने कई सारे पौधे भी नज़र आ रहे हैं।

कई लोग कॉलेज के इमारत के बाहर खरे हुए है।

एक चौकीदार कुर्सी पे बैठा हुआ है।

ऊपर बोर्ड पर बॉडी एसेंशियल शब्द लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में बिजली की कई सारी तारे नजर आ रही है।

सीढ़ी के पीछे से दिखाई दे रहे हैं।